यह एक क्लास है जिसमें सफ़ेद रंग का बोर्ड लगा हुआ है और उसपे कुछ लिखा हुआ है एक टीचर खड़ा हुआ है जो की माक्स लगाए हुए है।

ऊपर लाइट लगी हुई हैं दुकान लगी हुई हैं।

दुकान के बाहर एक बाल्टी रखी हुई है दुकान में कई सारी लाइट भी लगी हुई है।

एक ऑरेंज रंग की बड़ी सी मूर्ति रखी हुई है जिसके नीचे दोनों तरफ --

यहां पर एक बिल्डिंग है जो की सफेद और लाल रंग की है रास्ता दिखाई दे रहा है जिस पर एक कार खड़ी हुई है।